बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है और एक प्लेट रखी है जिसमे भी कुछ मछलिया रखी हुई एक डब्बा रखा हुआ दिखाई दे रहा है और एक --

ते एक कांच का गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और चेयर आगे दिखाई दे रहा है बोर्ड भी लगा हुआ है वहां पे कुछ चेयर --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

एक पत्थर भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जाली भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

ब्लैक है कुछ परदे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है इनका कलर हल्का पिंक है और यहां पे उम्म्म एक औरत बैठी हुई है।

हैं वहां रोड भी दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीचे जमींन भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके दीवार का कलर वाइट येलो पिंक है यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है।

बहोत सारी तस्वीर हमें दिखाई दे रही और एक स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है नीचे एक टेबल और चेयर भी रखे हुए दिखाई दे रही और कारपेट बिछा हुआ है जिसका कलर --

यहां पे मकान दिखाई दे रहा है जिसके दीवालो का कलर व्हाइट ग्रीन है यहां पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे --

छत भी बना हुआ है जिसपे कुछ कलर वगैरह लगे हुए हैं | कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और निचे जमींन भी दिख --